रोड पे एक कीप पिक-उप है पिक-उप के ऊपर एक टायर है और उसको जो घेरने वाला होता है वो पीला है और आधा है और एक अम एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है अमर ज्योति के लिए।

अमरज्योति अब टेम्पू है। टेम्पू के ऊपर सामान रखा हुआ है बहोत सारा आदमी है चार गो बाइक है। एक बस लगा हुआ है। बस के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। बस बस में बहोत सारा आदमी बैठे हुए हैं।

एक एक घर बनाया हुआ है जिसमे एक आदमी घार बोहोत अच्छा है और घर के अंदर दो पेड़ हैं बहोत अच्छा अच्छा पेड़ लम्बा है हरा-हरा है जो घर का है जो उसमे एक मतलब उम्म गोला छोड़ा हुआ है। गोला से दो आदमी देख रहे हैं और बाकी लोग ऊपर हैं उसके ऊपर फूल है बहोत अच्छा है गुलाब --

और पानी जो पानी है उससे बहोत अच्छा मतलब व्हाइट है मतलब उज्जर देखे में लग रहा है और जो पूल है बहोत अच्छा है पूल के ऊपर से आदमी कूद-कूद के नहा रहे है नीचे पानी में।

कैनरा बैंक अ ग्रामीण बैंक और जो बोर्ड बहोत सारे लगे हुए हैं और नीचे रोड है और रोड पे फोर व्हीलर लगे हुए हैं व्हाइट कलर का है जो उसमें लाइट लगा हुआ है उ मतलब रेड है और पीला है और बाइक लगा हुआ है बहोत सारा आलू रखा हुआ है रोड --

पानी में क़्वा लोग कूद-कूद के नहा रहे हैं और दो लोग ऊपर है बाकी सब नीचें है । पानी में नहा रहे है ।

और जो क-लकड़ी है रखा हुआ है सूखा-सूखा हुआ है और घास है उसके बगल में आरी है।

ये शोरूम है शोरूम के शोरूम के अंदर दो गाड़ी लगा हुआ है आर दो लोग बै एक खड़े है एक बैठे हुए हैं।

और एक का जो शर्ट है ब्लू है और नीचे जीन्स के जूत्ता पहने हुआ है। पेंट कर रहे हैं जो बाल्टी है ला लाल रंग का है।

चार ठो लड़की है चारो मतलब कुछ लिए हुए हाथ में पकड़ी हुए है सभी लोग उस के जो कपड़ा पे है उ मतलब जो रेड है पीला है उजला है और उस पे हुआ है।